डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।

और दो गिलास भी नजर आ रहे--

मुझे एक बहुत बड़ा खेलने का स्थान दिखाई दे रहा है।

और लोग भी दिख रहे हैं।

इस दृश्य में में मुझे एक बहोत बड़ा खेत नजर आ रहा है।

इस दृश्य में मुझे एक--

और उसके पीछे एक बहोत बड़ा घर भी दिखाई दे रहा--

और उसके सामने एक गाड़ी भी दिखा--

उसके सामने गाड़ियां भी दिख रही है और उसके सामने कुछ --